इसमें जो डिजाईन बना है वो ग्रे डार्क ग्रे कलर का है निचे की दिवार है जो ग्रे कलर की है ऊपर असमान है बाजु में पेड़ लगे है जो हरे कलर --

टीन भी लगे हुए है और इसके गोदाम मे व्हाइट कलर पूता हुआ हैएक बाइक खड़ी है जो ब्लैक कलर की है एक रास्ता हैजो कच्चा हैऔर आसमान साफ हैग्रे कलर का है।

दो गुम्बज है दोनों गुम्बज मे सबसे नीचे नीला कलर दिख रहा है ऊपर बीच मे हरा ओर ऊपर लाल दिख रहा है और सबसे ऊपर मे लाइट जल रही है जो पीले कलर की है और अंधेरा है।

एक लड़का खड़ा है जिसने व्हाइट टी शर्ट और येलो लोअर पहना है दो ठो बच्चे है।

यह एक गार्डन है गार्डन में बच्चों के दिखाने के लिए एक स्टेज-- एयरोप्लेन का रखा हुआ है साइड में झुला लगा हुआ है।

ये एक वर्क शॉप हैयंहा पे सामने टेबल दिख रही है जो येलो कलर की-- वर्क शॉप की दीवार व्हाइट कलर की-- उसमें दरवाजे जो नीले पेंट पोते हुए है ऊपर की छत--

यहां एक मस्जिद दिख रही है जिसमें लैन्टर्न डाला हुआ है इसकी चारमीनारे दिख रही हैं जिसमें सबसे ऊपर हरा रंग पोता है और लाल कलर से नक्काशी बनी हुई है ये मस्जिद में वाइट कलर का पोता है।

यहां पर एक ऑफिस दिख रहा है जो बहुत बड़ा सा है जिसे पीला रंग होता है इसके खिड़की दीवार है।

आधी एक खिड़की दिख रही है नीचे का फर्श जो सीमेंटेड है और ऊपर आसमान दिख रहा है जो आसमानी रंग का दिख रहा है और नीचे--

यह एक छोटा सा स्कूल समज स्कूल है इसका कलर-- पीले कलर के दीवाले हैं उसके गेट में चैनल गेट लगा हुआ है और ऊपर लाल कलर का पोता हुआ है इसमें लाल बाउंड्री है सामने कच्चा रास्ता है।